कार है उसके सामने काफी बड़े--

के अंदर रैकेटस फ़ुटबॉल शटल --

ये गुरुद्वारे की तस्वीर है।

इसमें रेड कलर के बैलून को--

ग्राउंड में हॉकी खेल रहे हैं।

के बाहर खड़े हैं।

सामने काफी शॉप्स भी बनी--

फ्लावर्स ऊपर हैंग करके रखें हैं।

तस्वीर में दूलहा दुलहन की--

मॉल में काफी बुक --

नर्सरी काफी गमले उल्टे--

सामने एक एल_सी_डी भी लगी हुई है।

कोचिंग ले रहे हैं।